और इसको वॉल चौक से निशान देकर खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड टाइप से बनाया गया है जो कि क्रिकेट खेलने वाले--

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

जमीन दिख रही है तस्वीर किसी खेत की लग रही है।

साइड में एक अ टेबल लखी हुई है।

इसमें ऑरेंज कलर की पुती हुई है।

इस तस्वीर में किसी जगह का शायद ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है।

ए_के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन का बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर वार दो मंजिली बिल्डिंग दिख रही है ऊपर बरामदा टाइप में दिख रहा है।

और अंग्रेजी डबास में अंग्रेजी दवा खाना मेडिकल स्टोर का भी बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में समन्दर नजर आ रहा है।

ये तस्वीर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की है।

जहां पे पास में एक पीपल का वृक्ष भी नजर आ रहा है।

और अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है।

इसपे डाक घर पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम सब ऊपर लिखा हुआ है।

ऊपर मछली और बिच्छू की भी कला कृति बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक मूर्ति नजर आ रही है जो कि सफेद रंग की है।

माथे पे केसरिया रंग का टीका लगा हुआ है।

पीछे पेड़ लगे हुए हैं जो की बहोत दूरी पे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर सामने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल लहे हैं।

इधर एक आदमी खड़ा है जो कि मेहरून कलर की शर्ट और काली पैंट पहने हैं और टोपी लगाए हुए है।